और बगल में दिवाल के मूर्तियाँ बनी हुई है एक शंकर भगवान की हनुमान जी की।

बड़ा -सा एक हॉल है हॉल की लंबाई --